अ गाड़ियों के टायर्स दिखाई दे रहे है।

लड़की के गले में एक अ गले में एक दुपट्टा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र में हमें यहां पर एक--

बहोत से सोफे लगे दिख रहे हैं।

एक चित्र में हमे यहां पे एक--

चित्र दिख रहा है यहां हमें बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।